इधर बोर्ड लग रहा है और एक खिड़की लगी हुई है और पेड़ लगा हुआ है।

करता है जो की बहोत सुंदर--

ये दुकान है और इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैंऔर बैग टंगे हुए हैं स्टेशनरी टंगी हुई है।

बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में जोकि बहुत ही ज्यादा सुंदर --

मंदिर है जो कि लोग पूजा कर रहे हैं और बहुत सारा मंदिर लग रहा है।

पेड़ भी दिख रहा है और उसके साथ साथ औरतें बैठी है जो बहोत ही सुंदर लग रही है।

बहुत ही अच्छा ये डेस्क पड़ा हुआ है।

और वहाँ पे लगा हुआ है और ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में बहुत ही ज्यादा।

मैदान है जो कि बहुत ही सुंदर मैदान लग रहा है और पेड़ भी लगे हुए हैं इसके आसपास में।

क्योंकि बहुत ही सही लग रही है और इसकी फोटो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर फोटो है और--

और बहुत सारी खिड़कियां है कांच की जोकि बहोत ही सुंदर लग रही हैं।

यहां बहुत ही अच्छी एक दुकान है और लगे हुए हैं जिसमें शटर --

और बहुत चाली चर्च लग रहा है बहुत सारी खाली बेंच चिपड़ी हुई है यहाँ पे।

और कुछ लोग खड़े हैंजो कि लग रहा हैकि पूजा करने जा रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के।